इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि कैसेः एसक्यूएल व्यू में सरल क्वेरीस बनाएँ सरल एसक्यूएल लिखें
सिलेक्ट फ्रॉम और व्हेरे वाक्यांश का उपयोग करना
और फील्ड्स और टेबल्स के नाम के लिए छोटे बड़े या मिश्रित अक्षरों का चुनाव करना
एसक्यूएल व्यू में क्वेरीस बनाने के लिए बेस का इस्तेमाल करने से पहले लिबर ऑफिस बेस के बारे में चर्चा करते हैं
बेस एचएसक्यूएल डेटाबेस इंजिन में रन होता है
यह जावा में लिखित एक ओपन सोर्स इंजन सॉफ्टवेयर है
एचएसक्यूएलडीबी पर अधिक जानकारी के लिए इस पर जाएँ httphsqldborg ठीक है अब एसक्यूएल के बारे में सीखते हैं
एसक्यूएल का मतलब है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज
यह डेटाबेसेस में एक्सेस और उनका कुशलतापूर्वक इस्तेमाल करने के लिए एक आदर्श लैंग्वेज है
यह एक अंतर्राष्ट्रीय मान्यताप्राप्त अंसी मानक है
और इसलिए यह विभिन्न प्रकार के डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स या डीबीएमएस में इस्तेमाल होता है
एसक्यूएल का सबसे सामान्य उपयोग है डेटाबेस से डेटा प्राप्त करना
जो क्वेरींस डेटाबेस के नाम से भी जाना जाता है
एसक्यूएल का उपयोग डेटाबेस में डेटा डालने डेटा को अपडेट करने या डेटा मिटाने के लिए भी किया जा सकता हैं
और हम इन सब कार्यों को बेस का इस्तेमाल करके अपने पिछले ट्यूटोरियल्स में कर चुके हैं
उपयोगकर्ता के अनुकूल विजार्ड्स और डिजाइनिंग विंडोज का इस्तेमाल करके
किन्तु आधारभूत क्वेरी लैंग्वेज की जानकारी हमें डेटाबेस से क्वेरी करने में अधिक लचीलापन और मजबूती देता है और एसक्यूएल को केवल डेटा को बदलने के लिए नहीं बल्कि डेटाबेस और टेबल की संरचना को बदलने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं
चूँकि हमारा ट्यूटोरियल एसक्यूएल के बारे में सबकुछ नहीं बताता हैयहाँ कुछ लाभदायक ट्यूटोरियल्स और उनकी वेबसाइट्स हैं
एचएसक्यूएलडीबी के पास खुद के यूज़र गाइड्स हैं
इन्हें ऑनलाइन देख सकते हैं या इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं और अपने कम्प्यूटर में पीडीएफ फाइल के रूप में सेव कर सकते हैं
ठीक है अब कुछ एसक्यूएल सीखते हैं
हम अपना परिचित उदाहरण लाइब्रेरी डेटाबेस खोलेंगे
अब अपना लाइब्रेरी डेटाबेस खोलते हैं
अबबाएँ पैनल पर क्वेरीज सूची पर क्लिक करते हैं
और फिर क्रिएट क्वेरी इन एसक्यूएल व्यू पर क्लिक करिये
अब हम क्वेरी डिजाइन शीर्षक नामक एक खाली विंडो देखते हैं
और यहीं एसक्यूएल में हम अपनी क्वेरीस टाइप करेंगे
अपनी पहली सरल क्वेरी लिखते हैं
और वह है लाइब्रेरी की सभी पुस्तकों की सूचनाओं का पता करना
किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए सिलेक्ट कीवर्ड की आवश्यकता होगी
अतः हम अपनी क्वेरी इस तरह लिखेंगे
सिलेक्ट फ्रॉम बुक्स
यहाँ बुक्स टेबल का नाम है
बुक्स में बड़े ब पर ध्यान दीजिये
हम ध्यान से पहले इस्तेमाल किये गये टेबल या कॉलम नामों का अनुसरण करेंगे
और एक वाइल्ड कार्ड है
यहाँ इसका मतलब है बुक्स टेबल से सारे फील्ड्स या कॉलम्स को प्राप्त करिये
अब इसका निष्पादन या रन करते हैं
एडिट मेन्यू पर क्लिक करिये और फिर रुन क्वेरी पर क्लिक करिये
अब हम ऊपरी पैनल पर बुक्स पर रेकॉर्ड्स की एक सूची देखते हैं
हम इस क्वेरी को या हमारी लिखी किसी भी क्वेरी को सेव कर सकते हैं और उनको विवरणात्मक नाम दे सकते हैं
अतः यहाँ हमारी पहली सरल क्वेरी है
यहाँ कुछ सलाह है एचएसक्यूएलडीबी डेटाबेस के ऑब्जेक्ट नामों जैसे कि टेबल्स और कॉलम नामों के लिए केस सेंसटिव है
मतलबबड़े ब में टेबल नाम बुक्स छोटे ब में बुक्स के समतुल्य नहीं है
किन्तु आसानी के लिए हम सभी बड़े अक्षर या सभी छोटे अक्षर इस्तेमाल कर सकते हैं
उदाहरणस्वरुप बुक्स बड़े अक्षरों में या मेंबर्स छोटे अक्षरों में इत्यादि
किन्तु मिश्रित अक्षरों का इस्तेमाल पढ़ने और समझने में सरल हो सकता है
उदाहरणस्वरुप बुकसिश्यूड बड़े ब और आई के साथ
या रिटर्नडेट बड़े र और डी के साथ
अतः हमें टेबल नामों और कॉलम नामों को वैसे ही इस्तेमाल करना चाहिए जिस तरह से वह बनाये गये हैं
एसक्यूएल कीवर्ड्स के लिए जैसे सिलेक्ट हम कोई भी अक्षर या मिश्रित अक्षर इस्तेमाल कर सकते हैं
किन्तु बेहतर पठनीयता के लिए हम अपने उपयोग में समान रहते हैं
अपने उदाहरणों में हम कीवर्ड्स के लिए सभी बड़े अक्षरों का इस्तेमाल करेंगे
अब अपनी अगली क्वेरी पर
हम इस क्वेरी को नई विंडो में टाइप कर सकते हैं या हम इसे पिछली क्वेरी के ऊपर लिख सकते हैं
अभी के लिए इसे पिछली क्वेरी के ऊपर लिखते हैं
चलिए बुक्स टेबल से विशिष्ट कॉलम्स को प्राप्त करते हैं सिलेक्ट टाइटल ऑथर फ्रॉम बुक्स
और क्वेरी रन करिये
हम फाइल मेन्यू बार के नीचे भी रुन क्वेरी आइकन का इस्तेमाल कर सकते हैं
या कीबोर्ड शॉर्टकट फ़5 इस्तेमाल कर सकते हैं
और यहाँ हमारे रेकॉर्ड्स केवल उन कॉलम्स में हैं जिनकी हमें जरूरत थी
आगे बढ़ते हैं
चलिए अपनी क्वेरी के लिए कंडीशन्स या मापदंड दाखिल करते हैं
हम केवल उन पुस्तकों को पायेंगे जो कैम्ब्रिज के द्वारा प्रकाशित हुई हैं
और हमारी क्वेरी है सिलेक्ट फ्रॉम बुक्स व्हेरे पब्लिशर कैम्ब्रिज ध्यान दीजिये हमने एक नया कीवर्ड व्हेरे दाखिल किया है
एक कंडिशन का अनुकरण कर हम कहते हैं पब्लिशर कैम्ब्रिज के बराबर है
चलिए अब अपनी क्वेरी रन करते हैं
और हम केवल वही पुस्तक देखते हैं जिसके लिए पब्लिशर कैम्ब्रिज है
और इसी प्रकार से एक क्वेरी में हमारे पास कई प्रकार की कंडिशन्स हो सकती हैं
चलिए एक क्वेरी दो कंडीशन्स के साथ लिखते हैं
केवल उन पुस्तकों को प्राप्त करते हैं जो कैम्ब्रिज द्वारा प्रकाशित हैं तथा जो केवल 1975 के बाद प्रकाशित हुई हैं
और हमारी क्वेरी है सिलेक्ट फ्रॉम बुक्स व्हेरे पब्लिशर कैम्ब्रिज एंड पब्लिशडायर जीटी 1975 और व्हेरे कीवर्ड या वाक्यांश के बाद हम दो कंडिशन्स देखते हैं
ध्यान दीजिये कि इन्हें एंड के इस्तेमाल से एक साथ रखा गया है
यहाँ एंड को लॉजिकल ऑपरेटर कहते हैं
और यहाँ यह कंडिशन्स को जोड़ने का काम करता है
ओर एक दूसरा लॉजिकल ऑपरेटर है
बाद में उपर्युक्त क्वेरी में इनका इस्तेमाल करके इनके बारे में जानिए
अब क्वेरी रन करते हैं और ऊपर परिणाम देखते है
यहाँ वह पुस्तक हैं जो हमारी कंडिशन्स से मेल खा रही हैं
ठीक है बहु कंडिशन्स को सम्मिलित करने के लिए एक तरीका और भी सीखते हैं
कैसे हम केवल उन पुस्तकों की सूची पा सकते हैं जिनका प्रकाशक कैम्ब्रिज या आक्सफोर्ड है या दोनों हैं
और यहाँ हमारी क्वेरी हैSELECT फ्रॉम बुक्स व्हेरे पब्लिशर इन कैम्ब्रिज आक्सफोर्ड नये कीवर्ड इन पर ध्यान दीजिये
यह हमें एक कॉलम पर निर्धारित कंडिशन्स को जोड़ने में मदद करता है इस उदाहरण में पब्लिशर है
और अब परिणाम पर ध्यान दीजिये
यहाँ एक नियत कार्य है निम्न के लिए अपनी एसक्यूएल क्वेरीस लिखिए और जाँचिये
लाइब्रेरी के सभी सदस्यों की जानकारी प्राप्त करिये 2
सभी पुस्तकों के शीर्षक की एक सूची प्राप्त करिये जिनकी कीमत आरएस १५० से अधिक है 3
पुस्तकों की एक सूची प्राप्त करिये जो कि विलियम शेक्सपियर या जॉन मिल्टन द्वारा लिखी गयी हैं
चलिए एसक्यूएल के बारे में और अधिक अगले ट्यूटोरियल में सीखेंगे
इसी के साथ हम लिबरऑफिस बेस पर एसक्यूएल व्यू में क्वेरीस के इस ट्यूटोरियल की समाप्ति की ओर आ गये हैं
संक्षिप्त में हमने सीखा कि एसक्यूएल व्यू में सरल क्वेरीस कैसे बनाएँ
सरल एसक्यूएल कैसे लिखें
सिलेक्ट फ्रॉम और व्हेरे वाक्यांश को इस्तेमाल करें
और फील्ड्स और टेबल्स को नाम देने के लिए बड़े छोटे या मिश्रित अक्षरों का चुनाव करें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
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद